और एक आदमी बैग टांग कर खड़ा हुआ है।

पेट्रोल पंप के पास हमें कुछ आदमी खड़े हुए दिखाए गए हैं।

इस चित्र में हमें एक आदमी दिखाया गया है।

और दो आदमी बैठे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक आदमी गाड़ी का टैर पकड़े हुए दिखाया गया है।

ऐ और कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

पेट्रोल पंप के पास में बहुत सारी मोटरसाइकल खड़ी हुई हैं।